आस-पास बहुत से पेड़ दिख रहे है सामने पेड़ आगे पेड़ पीछे पेड़ पेड़।

रास्ता दिख रहा है मिट्टी का आसपास घास लगी हुई है छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं सामने बड़े पेड़ लगे हुए --

सूरज की रोशनी डार्क कलर के आसमान में दिख रही है नीचे एक जमीन है आस-पास बिल्डिंग है घर है मकान हैं पेड़-पौधे दिख रहे हैं दूर खंभा लगा हुआ दिख रहा है सामने।

एक बैनर को दिख रहा है की ट्रि--ट्रिक लिखा हुआ है मोबाईल नंबर दिया हुआ है नाइन थ्री थ्री फौर नाइन वन थ्री सिक्स वन फोर लिखा हुआ है पिंक कलर दिया हुआ है दीवाल

रेड कलर का कुछ टब है ऊपर आसमान है सामने बहुत से पेड़ है |